इसमें दो गधों का दृश्य दिखाया गया है।

यह एक स्टेशन के बाहर का दृश्य है।

यह एक मेडिकल में रखे गए दवाईयों का दृश्य दिखाया गया हैं।

यह एक छोटे से दुकान का दृश्य है।

पानी इसका चमक रहा है।

और इस लाइटें के पीछे भी एक गाड़ी खड़ा है।

यहां पर एक वाइट कलर का कार रखा गया है।

बाहर गार्डन में के बीच में एक रास्ता भी दिख रहा है।

दो पीले और ब्लैक रंग के हैं।

और बगल -बगल में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं हरे- भरे सामने एक पेड़ है जो सुखा है।

और एक छोटी बच्ची का जो सफेद और ग्रे कलर का वो दिखा रहा है।

और नीचे की तरफ फ्री होम डिलीवरी लिखा गया है।

जो सफेद कलर का दिख रहा है और जिसमें रेड कलर का हार्ट शेप का डिजाइन किया गया है।

और बहुत सारे यहां रेड कलर के हार्ट से शेप का डिजाइन --

और इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े ताड़ का पेड़ दिख रहा हैं।

और इस दुकान में दो आदमी बैठे हुए हैं।

और इस दुकान में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है।

और गार्ड एक छोटा-सा दरवाजा खोलकर सामने खड़ा है।

और इस घर के सामने छोटे छोटे पौधे लगाए गए है।

एक तार का पेड़ दिख रहा है।

एक बस सफेद कलर का है।

यह एक गोडाउन का दृश्य है।

यहां पे बहुत सारे आदमी काम करते हुए दिख रहे हैं।

उसके मुंह में ब्लू कलर का मास्क लगे हुए हैं।

यह एक कमरे के अंदर का दृस्य है।